इस लैब को बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया है।

सब नए नए कपड़े पहने हुए हैं और सब कहीं जा--

टेबल लगा हुआ है जिसमें तीन कुर्सी रखा हुआ है टेबल पे--

और एक आदमी एक पत्थर पे बैठा हुआ है हाफ पैंट टी शर्ट पहन के।

यहां पर एक चेयर भी है और--

जिसमें से दो तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति--

और यहां पर बहोत सारे तार है और बजरंगबली का यहां पर झंडा भी लगा हुआ है।